जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे है हमें यहां पे कुछ टमाटर दिखाई दे रहे है टमाटर बास्केट में रखे गए है।

आप देख सकते हैं टमाटर कच्चे-पक्के हैं पूरी तरीके से पके हुए नहीं है बट बहोत ही अच्छे हैं ठीक-ठाक है।

जैसा कि हमें यहां पे देखने को मिल रहा है यहां पे टेरेस है टेरेस पे आप देख सकते हैं नाइट टाइम है और यहां सामने देख सकते हैं।

देख सकते हैं उसका चेहरा छुपाया गया है और ये पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है दोनों पेड़ साथ में और ये बीच में खड़ा है देख सकते हैं यहां पे आप --

मंदिर आप देख सकते है जय गणेश का है काफी अच्छा मंदिर है ये और बहुत प्यारी जगह आप खुद ही यहां पर आ के देख सकते हैं।

देख सकते हैं ये काफी पुराने टाइप का बनाया गया है इसमें एक पेड़ है लगा हुआ है और यहां पे एक व्हाइट कलर की पानी की टंकी देख पा रहे हैं।

अगर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा सारा हैं इसका चौक भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हैं पेंट इसका कुछ पुराना सुराना सा हैं।

जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं यहां पे एक ऑफिस है ऑफिस में आप देख सकते हैं काफी अच्छी फैसिलिटी की गई है।

कई भईया यहाँ पे खड़े है जिनके चेहरे छुपाए गए हैं कईयो के चेहरे हम देख पा रहे हैं मूर्ति आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर है।

जैसा कि हमें यहां पे देखने को मिल रहा है यहां पे गार्डन है गार्डन में आप देख सकते हैं काफी अच्छी हरियाली है।

लेडीसे यहां दिखाई दे रही है जो कि यहां पे इकट्ठे खड़ी हैं और यहां पे कई जेंट्स उस साइड देख रहे हैं उधर की ओर एक कार हम देख पा रहे हैं।

खिड़कियों से हम देख पा रहे हैं कुछ पेड़ हमें दिख रहे हैं।

जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे है यहां पे एक होटल है होटल के अंदर आप देख सकते है भईया काउंटर पे बैठे हैं।

जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हैं यहां पे पुराने टाइप का एक घर सा बना हुआ है घर के बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं एक कुत्ता खड़ा है।